केक केक में औरियो का फ्लेवर डाला गया है और किटकैट का फ्लेवर डाला गया है। काफी सारी चीजों का फ्लेवर डाला गया --

यहाँ पर ये एक काफी सारी बसे वगेरा खड़ी हुई हैं। ये एक काफी बड़ा बस अड्डा है। यहाँ पर एक बस खड़ी है और साइकिल वगेरा भी खड़ी हुई हैं और यात्री अपने सफर के लिए तय्यार है।

इसमें काफी सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है और पहाड़ के टुकड़े भी दिखाई दे रहे है और एक कौआ भी बैठा हुआ है।